इस पिक्चर में पांच लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें से दो लेडिस है तीन जेंट्स है और पीछे परदे लगे हुए हैं दो का कलर येलो और पिंक कलर में है येलो वाले परदे में फ्लावर्स दिखाई पड़ रहे हैं साइड में व्हाइट और रेड कलर के भी फ्लावर्स दिखाई पड़ रहे हैं साइड में फ्लावर्स लटके हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

इस पिक्चर में साथ स्टैचू दिखाई पड़ रहा है जिसमें से एक स्टैचू एक लेडी का उसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे उसके हाथ में बिगड़ा है उसके पीछे एक मछली भी दिखाई पड़ रही है साइड में पढ़ने लगी तो पर्दों पर एक ढोलक भी बंधी हुई है।

इस पिक्चर में एक आदमी खड़ा हुआ है उसने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स --

इस पिच्चर में दो लोग दिखाई पड़ रहे है। एक बच्चा है और एक आदमी है। आदमी ने ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है। उसके हाथ में मोबाइल है। सामने एक शीशा लगा हुआ है। शीशे में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। सामने बहुत से लोग बैठे हुए है।

पिक्चर में बहुत से लोग दिखाई पड़ रहे हैं जैसे यहां पूजा हो रही है सामने एक लेडी बैठी हुई है।

कुछ लोग दिखई पड़ रहे है सामने कुछ बाइक्स भी दिखाई पड़ रही है एक ओटो रिक्सा भी दिखाई पड़ रहे हैं।

में एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैन्ट पहनी हुई है साइड में बोहोत सारा समान टंगा हुआ है पीछे एक फ्रिज दिखाई पड़ रही है फ्रीज --

रोड दिखाई पड़ रही है ग्रे रंग की दिख रही है यहाँ पे साइड वाइट कलर की लाइन जाती दिख रही है यहाँ पे बाइक दो खड़ी हुई दिख रही है जो की ब्लू और ब्लैक रंग में दिखाई पड़ रही है।